ये दो आदमी हैं ये कंप्यूटर का काम ए कर रहें हैं।

तेल चवनप्राश है बदाम का तेल है आदि सामान है मिलता है कुछ भी --

पारक है यहां पे चारों तरफ--

एक आदमी है वो--

एक लुगाई भी बैठी है।

एक बेंच --

खड़े हैं उनके आगे चारा रखा है।

एडवरटाइजिंग ड्रीम बिग लिखा हुआ है।

एड़ा एक आदमी खड़ा है वो--

अंगूर हैं सेव भी हैं केळे --

दो आदमी बाइक पर बैठे हैं।

मंदिर दिख रहा है।

सफेद रंग की हैं इस पर--

एक्टिवा है एक्टिवा पर एक लड़की--

दो कुर्सियां लगी हुई हैं।